यहां पिंक कलर के बैलून दीवार पर लगे हुएं हैं।

और एक कांच का दरवाजा दिख रहा है।

बाहर ग्राउंड मे बहुत सारे पेड़ लगे हुए है आने जाने के लिए--

और यहां बहुत बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

घर के तरफ पेड़ पौधे लग--

और मिट्टी भी दिखाई दे रही है।

तोड़ी पड़ी हुईं हैं और एक पानी का कैंटर दिखाइ दे रहा हैं।

समुंदर में दो बोट दिखाई दे रही है।

समुद्र के अंदर बहुत सारा पानी है।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

घर के अंदर सीढ़ियां बनी हुई है।

सीढ़ियां बनी हुई है जिस पर एक आदमी खड़ा है उसने जैकेट पेहनी है और कैप लगा रखी है।

अलमीरा के अंदर बहुत सारा सामान--

और दीवार पर एक बैनर लगा है जिस पर जयपुरी मेल लिखा है और बहुत सारी पिक्चर बनी हुई है।

बैंक है बैंक के बाहर एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा है।

सड़क है सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और एक टेबल चेयर भी रखा हुआ है।

नदी है नदी के अंदर एक बोट है।

और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं।